जिसपे पे होंडा लिखा हुआ हे तथा उसके नीचे एक बैनर लगा है जो की येलो कलर का है उसपे यस लिखा दिखाई दे रहा हे ।

यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें एक बड़ा सा जहाज दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे अ आदमी तथा महिलाएं दिखाई दे रहे --

तथा यहाँ एक दरवाजा दिख रहा है जो की गिटार का है यहाँ बाहर खाली जगह दिखाई दे रही है।

ये एक स्टेशन दिखाई दे रहा है। जिसमें कई सारी ऑटो दिखाई दे रही हैं मिटि दिखाई दे रही है।

यह एक नदी दिखाई दे रही है नदी में बड़ी नाव दिखाई दे रही है तथा एक नाव नदी के बीच में दिखाई दे रही है।

यहाँ एक शॉप दिखाई दे रही है जिसपे एक पोस्टर लगा हे | उसपे स्टार मेंस पार्लर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे दो आदमी मंडे दिखाई दे रहे है ।